आप देख सकते हैं भाई यहां पे शादी पार्टी फंक्शन का व्यवस्था किया गया है चार पांच लोग खड़े हैं और बाकी लोग कुर्सी पर बैठे हुए हैं।

हाथ में अपने टोपी लिए हुए हैं और एक मालिक है इनको समझा रहा है और सभी लोग अपने मुंह पे मार्क्स लगाए हुए हैं।

ट्रैक्टर भी लगा हुए है एक गन्ने लादें हुए और एक बैलगाड़ी जिसमें एक भैंस दिखाई दे रहा है और ऊपर चीनी मिल का--

कुत्ता भी दिख रहा हैं और कुत्ते के आगे जो मस्जिद भी दिख रही है और यहां पे देहाती स्टाइल में बोले तो तार का वर्णन किया गया है और बगल में एक बांसवाड़ी का--

आप लोग देख सकते हैं ब्रो कियहां कोई रेस्टोरेंट पार्टी फंक्शन का व्यवस्था किया गया था जिसमें एक व्यक्ति।

लड़का और लड़की का फोटो भी दिखलाया गया है और एक व्यक्ति है जो।

हेलो हाय आप लोग देख सकते हैं कि यहां पे डिश बनाने की तैयारी हो रही है जिसमें एक कांटा एक चम्मच और।

एक पुतले को साड़ी पहना कर खड़ा किया गया हैं आप लोग देख सकते हैं इसमे चार--

भाई आप लोग देख सकते हैं समुद्र का सीन है दो अह इसमें तीन नाव दिख रहा है जिसमें एक--

पे तो बहुत ज्यादा यात्री बैठे हुए हैं मछवारे।

और एक भैया जी अपने हाथ में किसी कागज का वर्णन कर रहे हैं और पढ़ाई कर रहे हैं।

आ रही आगे पाछे कुर्सी भी लगी हुई है और एक व्यक्ति का चित्र भी बनाया गया है जैसे कोई अफिक हो।

इसमें आप लोग देख सकते हैं कि टेबल पर कुछ चाबियां दिखाई पड़ रही है और एक पंखा भी है सारे को।

चार पांच अंदर बंदे काम कर रहे हैं और बाकी बंदे अपना बुक ले रहे हैं और ये काफी बुक लग रहा है कोई और कुछ कैलेंडर भी टंगा हुआ।

जो बुक का किताब किताब का होस्टर बहोत बढ़िया लग रहा है और किसी बेतिया साइड का ही है।

तो हाय गाइस आप देख सकते हैं किसी मोबाइल शॉप है और बगल में इसका कोई अं ड्रेसेज है जो परी ड्रेसेज के नाम से प्रसिद्ध।

से ढक दिया गया और अलमारी के ऊपर एक पीले कलर का और कुछ बॉक्स रखी हुई है और एक दो पंखे हैं और एक घड़ी भी है और एक बड़ा सा प्रिंटर इसमें दिखाई।

का बखान कर दिया है और ये झरना जो पानी एकत्रित हो रहा है ये काफी गहरा भी होगा--

बाइक से ही आए हुए हैं और स्कूल का पेंट काफी अच्छी तरह से किया ।

आप लोग देख सकते हैं चंपारण मीट हाउस है इसमें एक व्यक्ति अपने हाथो की तरफ देख रहा और चर पांच व्यक्ति उसमें बैठे हुए हैं।

और कुछ लिखा हुआ है चिकन तास चंपारण मीट हाउस और ये जरूर ही लगता है कि बेतिया का ही कोई बस इनका सीन है।

ये मीट का दुकान है आप लोग देख सकते हैं ये हांडी भी रखी हुई है और कुछ तसले का भी इसमें जिक्र किया।

और इसके अंदर एक घड़ी भी है और कुछ बुक्की रखी हुई हैं और ये दुकान की सहज बहुत अच्छी तरह।

जिसमें चार-पांच नात दिख रही है और अंदर कुर्सी और बगल में बाइक दिख रहा है और कुछ बोरी भी लगा हुआ है जैसे कि वो।

एक व्यक्ति अपने मु अपने सर पे तसले में कुछ ईंट ले जा रहा है और एक।